यहां हम देख सकते हैं हमें यहां पे कुछ कट्टे दिखाई दे रहे हैं और यहां पे आप देख सकते हैं महाराजा --

यहां हमें रेड कलर का कारपेट बिछा हुआ दिख रहा है और काफी सुंदर डेकोरेशन हमें दिख रा है इस घर का।

झील काफी बड़ी सारी है आप खुद देख लीजिए कुछ चट्टानें यहां पे बनी हुई है पेड़ पौधे हैं हरियाली हमें नजर आ रही है।

एक यहां पे डमी लगा हुआ है डमी ने ऑरेंज कलर का बहोत ही प्यारा सूट पहना हु--

ये कुछ जंगल इलाका है और यहां पे बड़े बड़े पेड़ हम देख सकते है आसपास कुछ छोटे छोटे पौधे भी हैं।

यहां हम देख सकते है एक घर बना हुआ है घर मे आप देख सकते है छोटा सा चॉक है।

पटरी के पीछे आप देख सकते हैं बहोत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई हैं बिल्डिंग के आसपास एक गार्डन भी है गार्डन में काफी अच्छी हरियाली हमें नजर आ रही है।

यहां हम देख सकते हैं यहां पे खेत है।

झील के ऊपर देख लीजिए पुलिया से बनी हुई है और यहां पे चट्टान पे एक भईया बैठे हैं।

रेस्टोरेंट में हम देख पा रहे हैं चेयर लगी हुई है साथ में एक टेबल लगी हुई है आसपास कुछ छोटे-छोटे पौधे हैं।

और हमें यहां पे ऑटो भी नजर आ रहे हैं यहां पे एक भैया जो कि सामने से मास्क लगाके निकल रहे हैं।

मॉल में आप देख सकते हैं बहोत सारी पब्लिक हमें देखने को मिल रही है काफी सारे तरह तरह के यहां पे दुकानें भी है आप खुद देख लीजिए।

मंदिर काफी पुराने टाइप का सा है और यहां आप देख लीजिए काफी पुराने टाइप का सा और ये गेट खुला है यहां का।

बहोत ही प्यारी बिल्डिंग दिखाई गई है जो की काफी पुराने टाइप की सी है और ये थोड़ी मस्जिद टाइप की लग रही है आप देख सकते हैं--

हमें दिखाया जा रहा है कुछ यहां पे चेयर लगाई गई है आप खुद देख सकते हैं काफी अच्छा डेकोरेशन है यहां का --

यहां हम देख पा रहे हैं हमें बहुत सारी सब्जियां देखने को मिल रही है जो कि थैलियों में बंद है आप खुद देख लीजिए।

जो की बना हुआ नहीं है हमे गेट दिखाया जा रहा है पास मे उधर अंदर कुछ समान रखा गया है जैसे कि खाट है।